एक जो नदी है नदी मे पानी बह रहा है डेम्प बना हुआ है।

लोग खड़े हुए हैं ए.सी. लगी हुई है लाइटें ऊपर लगी हुई है और सभी लोग आदमियों जो कुर्सीयों में बैठे हुए हैं।

एक होटल है जिस होटल में अगल-बगल दीवारें हैं और कांच के कांच के और सामने काउंटर लगे हुई हैं और उसके बगल से कुर्सी दो कुर्सीयाँ रखी हुई हैं।

जो दुकान है फूल का एक आदमी जो एक फूल का माला पकड़ हुआ है और जो सामने दीवारों पर भी फूल के माले टंगे हुए हैं लाइट लगी हुई है।